इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है लाइटिंग लगी है बहुत सारी कुर्सी जैसी मशीन रखी हुए दिखाई दे रही है जो कि ब्लैक कलर की है और एक आदमी एक मशीन पर खड़ा हुआ --

हन निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस --

इस बिल्डिंग में मुझे एक सफेद कलर की मस्जिद दिखाई दे रही है। जिसके सामने काली-काली टीन जैसा कुछ लगा हुआ है और दो खिड़की दिखाई दे रही हैं।

रोड के बाजू में एक घर है जिसमे ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है।

इस इमेज मे मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है। जिसके बाहर लिखा है बजाज और बहुत सारी मोटरसाइकलों के पोस्टर --

बनी हुई दिखाई दे रहे हैं जो की साफ दिखाई नही दे रहे हैं मम और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

रेलिंग सी बनी हुई है और एक बीच में एक झूला डला है बच्चों के खेलने वाला --

इसमें पट्टियां और फुग्गे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आजू-बाजू पेड़ लगे पेड़ दिखा आजु बाजू पेड़ लगे हैं।